तलाब में बहुत सारे कमल के फूल लगे हुए हैं जो लाल और गुलाबी सफेद रंग में हैं।

एक आदमी है जिसने पैंट पहन रखी है नीले रंग की चप्पलें पहन रखी हैं।